नाव की सवारी करने के लिए आते हैं।

इ बुकिंग करनी पड़ती है यहाँ पे बहुत अच्छे--

ड्राय क्लीनिंग स्टीम आयरन --

आप देख ही पा रहे है यह एक लड़--

ओपटीक्लस है --

अ यहाँ पे डमरू है अलग अलग तरीके की जे --

एक जगह से दूसरी जगह भी पंहुचा जाता है अलग अलग --

आप देख पा रहे है आप देख पा रहे है यहाँ पे एक पहाड़ है।

पहाड़ में हरे हरे पेड़ हैं और बीच में एक तलाब है।

स्टारबक्स एक कॉफ़ी का ब्रँड है।

यहाँ लोग एच.डी.एफ.सी. बँक में--